दीपक जल रहे हैं।

ये यहाँ पे ए सि एक सीढ़ी हैं | सामने दो व्यक्ति खड़े हुये हैं।

चाबी खोल रही है पानी की और वहाँ काफी व्यक्ति दिख रहे हैं।